ए_सी भी चालू है यहां पे पोस्टर्स भी लगाए गए हैं ऊपर बहुत सारे फैंस भी है और यहां पे चार्जिंग रनिंग मशीन भी रखी हुई है ऑफिस मे।

ऊपर पानी का बड़ा सा ब टंकी भी है और आजूबाजू बड़े बड़े झाड़ा है और ऊपर--

बाजू बस भी है स्कूल बस और बाहर गाड़ी भी है ऊपर वायरिंग भी है लाइट के खंबे भी हैं।

यह एक बड़ी सी बिल्डिंग अपार्टमेंट है और यहां पर बहोत सारे ग्लासेस चढ़ाए गए हैं।

यह एक मंदिर है और इसमें बहुत सारे घण्टे हैं और ये रात का वक्त है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं।

और यहां ऊपर लाइटिंग के बड़े बड़े फोकस भी दिख रहे है।

यहां पे आसमान दिख रहा है बड़ा सा टावर दिख रहा है पहाड़ दिख रहा --

जाली भी खींची गई और आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे डब्बे हैं और यहां पे--

अलग अलग बॉक्सेस रखे हुए यहां पे भी है ये के बॉक्स हैं।

शेविंग के बॉक्स है यहां पे हर तरह के बॉक्स एक के ऊपर एक जमाए गए हैं छोटे से बड़े लेके।

यह एक सीधा रास्ता है बाजू कुर्सियां बकेटाय दुकान है और बहोत सारे सामान भी--

बाहर रखा हुआ और यहां पर बड़े-बड़े पिल्लाराम भी दिख रहे हैं। नीचे फर्शी टाइल्स डाले गए हैं।

यह एक किराना शॉप है और यहां पे शैंपूयां के पैकेट हैं अलग अलग--

यहां पे बड़े बड़े झाड़ा हैं संदल की लकड़ी की जैसा दिख रही है और यहां पे बड़ा गेट बंद है।

एक ऑफिस बाहर एक आदमी बैग पहना हुआ उसे बात कर रहा है और बाजू छोटे छोटे प्लांट्स हैं फूलों के लगे हुए हैं।

रारी भी लगाए गए और यहां पे आईडी लिखा हुआ है बोर्ड के और दीवार के ऊपर और--

एक बड़ी सी दुकान है। जय दुर्गा फैट कंपनी है। यहां पर फूड्स के आइटम्स मिलते है।

और यहां पे बाहेर अंदर बहोत सारे बोटियां भी रखे हुए और यहां पे लेफ्ट साइड में --

ये एक स्वास्तिक एनर्जी पेट्रोल डीजल पंप है।

एक मनसुक धाबा है यहां पे बहुत सारे कलर के--

ये एक नीचे रोड़ है और यहां पे टायल्स बिछाए गए हैं और यही पे स्टेशन दिख रहा--

मैग्गी है और सौंफ है और मूंगफली है बहुत सारे शेल्फ में इसे मूछा गया है।

यह एक ग्राउंड है और यहां पे बहुत सारे के बैंचा रखे हुए हैं और--

ये है एक मूर्ति कलाकार यहां पे टैटू बनाए जाते हैं ऊपर दीवार के ऊपर--